यहां मैं साड़ियों का गोदाम देख पा रही हूं।

जहां पे मोटे-मोटे और कुछ पतले लकड़ियां हैं।

जहां पे मुझे बहोत सारे दवाइयां रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां मैं एक रेलवे स्टेशन देख पा रही हूं।

एक आदमी को रिक्शा लेकर खड़े देख रही हूं।